ये एक अन अंदर से मंदिर है जहाँ पे बहुत अंधेरा है इसकी खाली खाली दिवारे काली इमारते दिख रही है।

उसके बगल और उसके पीछे भी एक घड़ है जो कि पीले और हरे कलर का है उसके ऊपर रखी यहां --

ये एक पटियाला शानी ढावा है जहां पे लोग स्‍नैक्‍स खाने के लिए आते है लेकिन --

यहाँ पर हर तरह के स्नैक्स मिलते है चाऊमीन कुरकुरा समोसे और और बीच रोड़ पर से एक लड़का भी जा रहा है जो की टी_शर्ट और जीन्स पेहना हु --

ये एक बहुत बड़ा जंगल है यहां पे बहुत सारे लंबे-लंबे पेड़ ऊगे हुए हैं ऊ दूर-दूर--

दूर-दूर पे पेड़ है काफी घने है और ये काफी सुनसान जगह है पार्क जैसा है लोग यहां पे घूमने--

एक काम कर रहे है एक लड़का का पेंट यूज करा रहे है जो कि जींस और जूते में--

और गेट के इस साइड दीवार पे भी कुछ जाने की जगह है।

और यहां लोग आ के खरीदते है जिसके आगे बहुत भीड़-भाड़ है यहां पे लोग रोड पे खड़े हुए हैं गाड़ी--

ये एक रिलायंस मॉल है जो कि काफी बड़ा और महंगा मॉल है जिसके आगे बहुत बड़ा सीसा --

यहाँ पे बहुत बड़ी इमारत है जहाँ पे गोल गोलंबर बने हुए है और यहाँ पे सामने बड़े बड़े दो पेड़े है और सामने --

यहाँ पे लाइट में बल्बै लगी हुई हैं पूरे टी_वी लगा हुआ --

ये एक बहुत पुराना बहुत ही अच्‍छा नया डिजाइन का बना हुआ मॉल है जिसके बारे --

और यहाँ पर गोल गोल बहुत ही ऊपर गया हुआ प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे दीवार पे ज़मीरे लकड़ी लगी हुई है ।

घर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है लाल और पीले कलर का कोई और सामने ऐसियां भी लगी हुई हैं ।

इसमे लेटने वाला भी मशीन है और यहाँ पे बन्डल जो होता है ड़म्बल वो काफ़ी वेटफूल है जो --

बदाम यहां पे किलो वाला बीच में रखा हुआ है अनानस है ।

जिसके वजह से बहुत ठंडक है यहां पे पेड़ है यहां पे पेड़ के पत्‍ते पूरे बिखरे हुए --

जो अपना प्रैक्टिस कर रहे है एक लड़का काले कलर का कपड़ा पहने हुआ टोपी पहना हुआ बॉल पकड़ रहा है और बीच में ज--

और उसके हाथ में चाय का कप है और हाथ में हरे कलर की पट्टियां भी बांधी हुई है इसके बगल में एक और लड़का है जो कि--